की मानो यहाँ की खूबसूरती लोगों को पूरी तरह से यहाँ आने में उन्हें प्रेरित कर देती है मुझे तो ये बहुत पसंद है।

ए ग्राउन्ड खास करके रनिंग ट्रैक बनाए जो गए है कि मुझे बोहोत ही अच्छा लगता है मे भी ग्राउन्ड मे अधिकतर रनिंग कर चुका हूं मेरे हिसाब से यह ग्राउन्ड बोहोत ही खूबसूरत है और बोहोत ही लाजवाब भी है।

यहाँ की खूबसूरती अगर मैं बात करूं तो इस पेड़ पौधे से और भी यह खिल उठती है साथ ही साथ अगर आप खिड़की से देखते हैं तो यहाँ की नज़ारा और भी आपको खूबसूरत लगेंगे जो काबिले तारीफ हैं।

और सुबह के टाइम खेलने भी बहुत ही मजेदार जगह है सभी को इस जगह का भ्रमण करना चाहिए।